मेडिकल के अंदर ब्लू कलर का दराज दिखाई पड़ रहा है।

दो पुलिस इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं।

जहां पे बहुत सारे पत्थर से बने हुए है।

उसके अंदर एक लड़का फंस गया है।

गुफा के दीवारों पे सफेद कलर से कुछ लिखा गया है।

गुफा काफी अंधेरी है गुफा का पत्थर ग्रे कलर का है।

यहां पे लोहे में रस्सी बंधी हुई है।

यह एक बड़े से नदी का तस्वीर है।

इससे ढेर सारी पानी पार हो रहा है सामने एक पूल नजर आ रहा है जिस पे एक औरत खड़ी है।

यह एक रूम का तस्वीर है जहां पे एक पोस्टर टंगा हुआ है।

और अच्छा डिजाइन किया हुआ है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है मसल जिम --

ऊपर एक पंखा चल रहा है सामने एक टेबल राखी हुई है।

जिसमें तंदूरी चाय स्पेशियलिस्ट लिखा हुआ है।

लड़का खड़ा है। बिस्किट्स रखी हुई हैं।

यह एक हॉल का तस्वीर है।

एक पीछे खड़े हैं तालाब के किनारे बहुत सारी अच्छी टाइल्से लगी हुई हैं ।

जहां पर ढेर सारे ताड़ के पेड़ लगे हुए है नीचे ढेर सारे छोटे छोटे घास फूस उगे हुए है।

फोटो में तीन आदमी एक काउंटर पे खड़े हैं।

पीछे एक बड़ा सा लाइट जल रहा है हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

ब्लू एंड व्हाइट हैं सामने ढेर सारी बैग्स रखी हुई हैं।

उसपे स्टील के जग हैं और कुछ पत्तियां रखी हुई हैं।

हर टेबल पे जग है नमक का एक छोटा बोतल है नीचे काफी साफ सफाई है।

यह एक कपड़ा दुकान का तस्वीर है।

पीछे चौकी हैकार्टून रखे हुए हैं लेफ्ट में डस्टबिन है और धूप आती दिखाई पड़ रही हैं।

पीछे ढेर सारे खजूर और नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।